और बस लाल और सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है। बस मे और कुछ पर्पल कलर लगे हुए है। एक टायर लगा हुआ है। टायर हरे कलर की दिख-- .

पूल दिखाई दे रहा है। पूल मे बाउंड्री दिखाई दे रही है। बाउंड्री मे काफी बड़ी सी हैवि मशीन दिखाई दे रही है।

एक अह एक पेड़ दिखाई दे रहा है। जिसमे भगवान बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है। नीचे डॉक्टर आंबेडकर-- .

घर दिखाई दे रहा है और बोटेल दिखाई दे रहे है बोटेल मे काफी सारे हैंड वॉश और सेनीटाजर --

एक टंकी है जिसमे ॲक्टर एइट पीएम फाइव टाइम लिखा हुआ है और उसमे नीचे पोस्ट का डब्बा है।

और नीचे ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा जिसमे भारतीय सडक --

एक पिंजरा है| जिसमे तोते है।